और खंबे दिख रहे हैं खूब सारे।

एक बड़ा सा पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसके बगल में एक ट्रक खड़ा हुआ है।

एक व्यक्ति चल हुआ दिख रहा हैं और जु दिख रहा है एक बड़ासा गेट है जिसके सामने पेड़ लगा हुआ हैं।

एक व्यक्ति बगल में काउंटर पर खड़ा हुआ है टिकट के लिए ये एक जू लग रहा है।

सामने एक अंकल जी खरीद रहे हैं मछली की दुकान है जो की तरह तरह की मछलियां रखी हुई है।

तरह तरह की पुस्तक रखी हुई नजर आ रही है।

मुझे इस पर अंगूर नजर आ रहे हैं इसमें खूब सारे काले अंगूर नजर आ रहे है।

हरा भरा पेड़ नजर आ रहे हैं बीच पर एक घर भी दिख रहा है।